ये तो किसी पुराने मंदिर की तरह लग रहा है और ये इसकी डिजाइन बहुत ही अमेजिंग है पुराने लुक की और एक लग रहा है।